और खाने की पीने की चीजे दिखाई दे रही है।

पर कुछ कुछ लोग दिखाई दे नहीं रहे हैं वो पिक्चर पेट्रोल पंप की--

ये आग अ आगड ये बाइक खड़ी हुई है और बहोत सारे लाकडे --

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये ड्रीम इलेक्ट्रिशियन की दुकान है वो ए_सी भी लगा हुआ है सोनी एल_जी सैमसंग आई_एफ_बी --

लिखा हुआ है वो आगड़ वो एक एक्टिवा है तीन चार बाइक खड़ी हुए गड्डी है।

है और कुछ अलग अलग तरीके से भी कुछ कुछ दिखाई देती है।

फूलदानियों की दुकान हैं फूलदानी लटके हुए हैं माला भी लटकी हुई हैं एक अंकल खड़े हुए हैं।

और कुछ तरह अलग अलग फुल अलग अलग जात के दिखाई देते--

इस पिक्चर में दिखाई देता है कि ये कुछ--

कपल्स की शादी हो रही है कुछ दो आंटी खड़ी हुए है।

पीने और हर्ष बेकरी दिखाई दे रही है।

चादर बिछाई हुई है ए_सी सामने दिखाई दे रहा है --

रोड साफ कर रही है एक बाकडा भी है और कोई गार्डन जैसा दिखाई दे रहा है।

मेडिकल की दुकान दिखाई दे रही है लोशन है।

एक कच्ची भी दिखै कादर भी दिखाई दे रही है।

पोपट का गर है अलग अलग जात के पिंजरे में।

इस पिक्चर में कुछ अलग ही दिख रा है कि ये एक्सिस बैंक कुछ--

उम्म मसाज की दिखाई दे रही है पन--

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि पेट्रोल डीजल --

हां यह हॉस्पिटल की है किस बारी--

क्योंकि ये ऑफिस बंद है वैसा लग रहा हैं।

बहोत सारे हॉस्पिटल के समान दिखाई देते।

इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है की ट्रेन लैंग्वेज में दिखाई देता है।

हॉस्पिटल का लोगो है और--

इस पिक्चर में दिखाई देता है कि ये मार्केट है।